यहां सामने काफी लड़के बैठे हैं और यहां पर एक --

अंदर से रस्सी बंधी हुई है पास में कुछ लोग खड़े--

है जिस में बहुत हरियाली है और उस के --

व्हाइट फर्श दिख रहा है पास में टेबल लगी हुई है।

यहां सामने एक कच्ची सड़क बनी हुई --

समटे हुए कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे --

के छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए --

है और साइड में ऊपर लाइट लगी हुई --

कॉपियां रखी हुई है जो बहुत सारी --

यहां काफी सारे बॉक्स दिखाई दे--

से बोर्ड लगा हुआ है और--

जो अलग अलग प्रकार की पेंट्री के पैकेट है।

हैं और कुछ बच्चे नीचे हरी घास--